छत पे बढ़िया सी डिजाइन बन रही है। खुला आसमान है। दो गईया हैं दो।

गाड़ियों से जाते हैं। ब्रेंच रखी है।

पेड़ हैं। ईटस रखी हैं। खंभे खंभे दिख रहे हैं।

घर भी है बहुत सारे घर के ऊपर टंकी रखी है। आसमान दिख रहा है।

टिंग हो रही है। बढ़िया सा पार्क है। सब लोग आते हैं यहाँ पर।

कैमरा लग रहा है। कंप्यूटर है मशीन है यहां पर बहोत सारी। टॉयलेट है यहां।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है यहाँ पर सब लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं यहाँ --

बहोत सारे लोग हैं अलग-अलग तरहा के झूले है यहाँ पर।

इस पिक्चर में एक बढ़िया से एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर --

हरे भरे पौधे भी है। आसमान भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पानी इस जगह को सब देख --

यहां पर एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है। यहां पर अलग-अलग तरह की बुक्स रखी हैं अलमारी में।

यहां अलग-अलग तरह की लाइट्स लग रही है|

इस पिक्चर में देखिए एक न्यू सा जिम लग रहा है। यहाँ पर अलग-अलग तरह के --